ये बालू सब भी दिखाई दे रही है।

और साइड में भी एक लड़का और एक लड़की खड़ा हुआ दिखाई दे रही है।

मुझे इस तस्वीर में दो लड़के काम करते हुए दिखाइ दे पा रहा है।

और फिर दूसरे साइड में भी बहुत सारी कपड़े सब भी रखा हुआ दिखाई दे रही है।

और फिर ऊपर में भी फेन लटका कर दिखाई दे पा रहा है।

समान में बहुत अलग अलग किस्म की दिखाई दे पा रही है।

मुझे इस तस्वीर में एक नदी दिखाई दे पा रही है।

और फिर बहुत सारे पेड़ भी देखने को मिल पा रही है।

ये यहां में मुझे बहोत सारा खिड़कियां भी दिखाई मिल रही है।

पिक्चर में मुझे एक सुंदर सा जगह दिखाई दे रहा है। उस जगह में मुझे एक बड़ा सा बिल्डिंग की लगाया हुआ दिखाई मिल रही है।

इ इस टेंपल में बहुत सारी सामान सब रखा हुआ दिखाई दे रही है।

साइड मे भी बहोत सारी पेड़ सब दिखाई दे रही है।

और इसमें बहुत सारी पेड़ भी देखने को मिल पा रही है।

और फिर यहां में कुछ पत्थर सब भी देखने को मिल पा रही है।

आसमान भी मुझे सफेद और ब्लैक रंग में दिखाई दे रही है।

यहां में लीनेवो लिखा हुआ भी दिखाई दे रही है।

एक अंकल के साथ भी एक आंटी भी देखने को मिल पा रही है।

मुझे इस तस्वीर में एक खाने की सामान रखा हुआ है सब दिखाई दे रही है।

और इसके अंद में अलग अलग किस्म खाने का दिखाई दे पा रहा है।

इन इसके सामने भी एक बड़ी सी पेड़ देखने को मिल रही है।

और वो लोग कुछ माला पहेन के भी देखने को मिल रही है।

मे भी बहोत सारे घर दिखाई दे पा रही हैं।

कि यहां में बहुत अलग अलग प्रकार का मछली भी दिखाई दे पा रहा है।

मुझे इस तस्वीर में तीन लड़के दिखाई दे पा रही हैं।

एक अंकल जो शर्ट पहन के दिखाई दे पा रहा है।